बहुत ही अच्छा लगता है। किसी भी त्यौहार हो या कोई ख़ुशी का चीज हो हम लोग मिठाई को माँगा करके खाते हैं। बहुत ही आनद लेते हैं बहुत ही अच्छा लगता है हमलोगों को खाने में और इसका आनंद लेने में।

काठ का सामान बहोत सुन्दर से बनाया जाता है। डिजाइनिंग भी बहोत अच्छा है देखने में भी बहोत अच्छा है। दोनों तरफ लड़कियों का तस्वीर दिया गया है उनका भी डिजाइन बहोत अच्छा लगता है देखने में भी बहोत सुन्दर लगता है लाल --

तारीफ करेंगे बहुत ही सुंदर है बहुत ही अच्छा लगता है देखने में शर्मीली और बहुत ही सरलता दिखाई पड़ते है।

बहुत सारे कार रखा गया है यहाँ पे डिजाइनिंग के कारों का बहुत सुन्दर लगता है देखने में भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर रखा भी गया है बहुत अच्छे से। यहाँ ऊपर में इसका टिना दिया गया है घर बना करके टिना दिया गया है उसके बगल में --

बड़ा सा बिल्डिंग है जहाँ पर लोग भी रहते हैं | पेड़ पौधे भी हैं बहुत अच्छा लगता है देखने में भी सुनने में भी समझने में भी --